और बहोत कुछ एक बहोत बड़ा पिलर और मेले में जो भी सामान लगता है सब कुछ लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

दो मोटरसाइकिल नजर आ रहे हैं और बिल्डिंग का --

और कुछ लोहे के पीलर नजर आ रहे है और पहाड़ी नजर आ रही है।

का अ बा सा एक फोन नंबर लिखा हुआ है सैलून के बाहर--

बैलून्स के गेट लगे हैं और उधर पे चार-पांच लोग खड़े हैं और एक लोरियल का पोस्टर भी लगा हुआ है।

नजर आ रहे है और टी_वी के ऊपर नाम लिखा हुआ है हाय सर --

इस फोटो में एक मंदिर नजर आ रहे हैं।

यह एक होटल या किसी क्लब की फोटो नजर आ रही है यहाँ पे काफी सारे टेबल कुर्सी और मेज रखे हुए हैं।

और एक सेलिंग फैन नजर आ रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

नाले का पानी नज़र आ रहा है और साथ मे एक ब्रिज नज़र आ रही है।

तो नजर आ रहा है जहां पे संत दास पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है और बिल्डिंग के बाहर एक बहोत बड़ी पेड नजर आ रही है।

बैठा हुआ है और कपड़े का थान नजर आ रहा --

वहां पे बच्चों के खेलने के लिए इक्विपमेंट लगा के रखे हैं जहां पे बच्चे पा--

एक फिश मार्केट दिखाई दे रहे जहां पे तीन चार से पांच लोग--

यह एक बाथरूम फिटिंग्स की शोरूम है जहां पे सारे टॉयलेट के सामान--

और ऑफिस के अंदर एक बोर्ड में शेखर एंटरप्राइज लिखा हुआ है।

और गेट के बाहर दो लोग खड़े हुए हैं।

इस फोटो में काफी सारे सुंदर-सुंदर सफेद कलर --

प्याज लहसुन सारी फसलें एक-एक लाइन में लगे हुए हैं और दूर तक बड़े-बड़े पौधे पेड़ नजर आ रहे हैं।

पीले कलर का ट्रक नजर आ रहा है।

और एक बहोत बड़े ग्राउंड नजर आ रही है और पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

ऑर्थोडॉक्स रीटैलर हाउस होल्ड पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स की दुकान का नाम लिखा हुआ है।

कोठी के बाहर एक ब्लैक कलर की गेट लगा हुआ है।

यह एक ग्रोसरी शॉप की दुकान है जहां पे घर की डेली की जरूरत के सामान बिस्किट नमक तेल चीनी--

और चिप्स के पैकेट नजर आ रहे हैं ब्रेड के फोटोए भी नजर आ रही है।

छह लोग दिखाई दे रहे हैं जो खेत में काम करते हैं।

क्लासरूम की फोटो जैसे लग रहे हैं जहां पे काफी सारे कुर्सी रखे हुए हैं और एक वाइट कलर का चेयर भी रखा हुआ है।

ग्राउंड नजर आ रहे हैं और ग्राउंड के --

पौधे नजर आ रहे हैं और एक हट भी नजर आ रहा है।

यह एक डेम की फोटो नजर आ रही है वाटर डेम जैसे भाखरा नं--

इस फोटो में एक बा--बाहर पार्क का गेट दिखाई दे रहा --

एक टोकड़ी में डालते हुए दिखाई दे रहा है साथ में नदी भी है जहां से मछलियां पकड़ रहे हैं।

और एक टेंट दिखाई दे रहे है और टेंट के साथ एक ग्राउंड पे एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आ रहा--